ये फोटो में कोई तो एंट्रेंस दिख रहा है ऊपर कोई तो शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे एक आधा व्यक्ति भी दिख रहा है जिसने काली कलर की टी-शर्ट और --

वहां पे रेती दिख रही है उस मैं रेती मैं झाड सुख पत्ते सूखे हुए जैसे दिख रहे है येलो कलर के यहाँ पर भी ग्रीन कलर के झाड़ दिख रहे है ।

यहाँ पे एक वाइट का महल जैसे कुछ तो दिख रहा है बोहोत बड़े-बड़े कोकोनट के झाड़ दिख रहे है यहाँ पे एक व्यक्ति बाहर --

फोटो में एक रास्ता दिख रहा है बड़ा सा बहुत सारे लाइट के खम्बे दिख रहे हैं डिवाइडर जैसा है।

एक्टिवा पे बैठा है। एक्टिवा की लाइट चालु है और आजू-बाजू पूरा पानी है। यहाँ साइड पूरा झाड दिख रहा है ।

प्राइस टैग लगा है। प्राइस टैग ग्री-ग्रीन कलर मैं लगा है बैनर मैं है और ब्लैक कलर का लिखा हुआ है। आजू-बाजू बोहोत सारे --

ये फोटो में व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है वहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिलडिंग है ऊपर ब्लू कलर का आसमान है यहां पे --

रेती उठाते हुए दिख रहे है एक अंकल खड़े है वाइट कलर की शर्ट में एक अंकल ने रेती हाथ उठाई हुई है।

अ बुक्स वगैरा रखी हुई है नीचे अ पेंसिल सेल्स का ये रखा है वहां साइड नमक --

के खम्भे बने हुए हैं। बोहोत बिल्डिंग्स दिख रही हैं और वो बिल्डिंग का कुछ काम है। ऊपर वायर दिख रही --

यहाँ पे एक मुझे नदी का फोटो दिख रहा है । यहाँ साइड बोहोत पानी है । वहां पे एक तालाब जैसा बना हुआ है । वहां पे भी पानी --